ये जो है ना आ बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिये यहाँ काफी उम्म आदमी जो हैं उन लोग भी काफी अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा --

ये आदमी पूजा करा रहा है। बोहोत ही आदमी ज्यादा याहा पूजा कर रहे है। की बोहोत ही अच्छा लग राहा की भाव कु सामने देखिये राम जी कृष्णा जी बोहोत ही ज्यादा भगवान जो याहा पूजा कर रहे है।

प्रथम ताला है जो फर्स्ट बिल्डिंग है जो नीचे के फर्स्ट फ्लोर है वही में यह है। बहुत ही अच्छा यहाँ अपने वर्कर को काम देते है और जो अकाउंट खुलाते है वह बहुत ही अच्छा लग रहा है।

देखने में इतनी मस्त लग रहा की क्या बता सकते आप भी देखिए हम भी देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा देखने में जय हिन्द दोस्तों जय हिन्द ।

जय हिन्द यह देखने में बहुत मजा लग रहा है। जय हिन्द।